यहाँ पर एक रूम है जो व्हाईट कलर का है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ योगा कर रही है।

हुई है और अंदर की तरफ दो रूम बने हैं सामने एक गोला का--

डिजाइन में बड़ा गेट बना हुआ है जो फ्रंट साइड का गेट है।

बाउंड्री वॉल बनी हुई है और कुछ लोहे के स्टंट्स लाइक बने हुए हैं गेमिंग के।

यहाँ पर एक शॉप है जो अंदर से पूरी ही व्हाईट कलर की है जहाँ पर बहुत सारी--

सामने एक टेबल है जिस परे कुछ सामान रखा है एक चेयर भी रखी हुई है।

के लगे हुए हैं सामने जो फ्रंट गेट है वो--

यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है और जो बाहर से व्हाईट और पिंक कलर का--

सामने की तरफ यहाँ इसका ब्लू कलर का बोर्ड लगा है ऊपर एक रेड कलर का बोर्ड भी ल--

यहाँ सामने एक लोहे के टीन सेट का एक क्रोम बना हुआ--

पीछे एक टावर भी है और पीछे की तरफ भी क--

कर रहे हैं इनके पास एक व्यक्ति और खड़े हैं ये--

बहुत सारे लोग यहां पर एक्सरसाइज वर्क आउट कर रहे हैं।

यहां चारों तरफ रेड कलर के पर्दे लगे हुए हैं और उनके सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

आगे एक वाइट कलर की बिल्डिंग है सामने पूरा कार्पेट बिछा हुआ है।

यहां पर एक ऑफिस है जो अंदर से पूरा ही वाइट कलर का।

और जिसमें शामने ब्लू और वाइट कल।

यहां पर एक रोड है रोड के साइड में कुछ जगह खाली है जहां पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर एक नदी है नदी के किनारे पर बाउंड्री बनी हुई--

के जस्ट साइड में एक और चेयर हैवहां पर।

ब्राउन कलर का ड्रेसिंग टेबल है और साइड में।

एक व्यक्ति सामने से लेकर जा रहे हैं पीछे एक वाइट कलर का फैन लगा हुआ है।

यहां सामने की तरफ एक ऑफिस है जो ऊपर ग्रीन कलर का है सामने इसका फ्रंट रेड और वाइट कलर का है जिसमें ।

और साइड में और भी ऑफिसेस है जिनके ब्लू पोस्टल है।

और यहां पर रंगोली कुछ व्यक्ति बना रहे हैं।

टॉप हैजिनके सामने की तरह ब्लैक येलो ग्रीन कलर .

पीछे की तरफ कुछ टेबल्स है जिन पर कपड़ों को जमा कर रखा गया है एक व्यक्ति हैं।

मने की तरफ इसका वाइट और रेड कलर का फ्रंट में पोस्ट .

कुछ कंटेनर है जो ब्राउन ग्रीन कलर के ही है पीछे से एक व्यक्ति निकल कर जा रहे है जिन्होंने औरे--

रुमाल है आगे की तरफ भी कुछ रूम्स बने हैं जो वाइट कलर के हैं।

आसपास यहां पर नीचे की तरफ भी बहुत सा सामान पड़ा हुआ।

दूसरे व्यक्ति हैं जो मशीन को चेक कर रहे हैं अंदर की तरफ।

पेड़ ऐसे भी है जिसमें रेड और येलो कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं।

आगे की तरफ पूरा कोहरा है सामने की तरफ कुछ घर बने हुए हैं।

और यहां पर इसके किनारे पर बहुत से लोग।

यहां पर एक शॉप है शॉप में एक अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं।

नीचे जो दीवार है वो पिंक और रेड कलर की है ऊपर झट।

वाइट और ग्रीन कलर का इसके ऊपर जो फ्लावर्स का सेट रखा हुआ है जो गोल्ड डिजाइन में बना।

यहां पर एक शॉप है जो फ्लावर की शॉप है यहां पर बहुत सारी।

कवर्स के सेट रखे हैंजो काफी कलरफुल है।

लोहे का एस्टांस बना है जहां ब्रिज बन रहा है।

और काफी कलरफुल लाइट लगी ग्रीन रेड येलो कलर की लाइट लगी।

और यह पूरी मूर्ति एक ब्लैक कलर के टेबल पर रखी।

यहां पर एक बहुत सारे रेस्टोरेंट है जिनके वाइट और रेड कलर के पोस्टर लगे हुए हैं।